और ट्रक भी बहोत सारे खड़ी है इसके अगल बगल एक रेलिंग भी लगी है।

इसमें अगल बगल पुलिस के बेरियल भी रखे हैं और कुछ व्यक्ति पैदल भी चल रहे हैं और कुछ गाड़ियां खड़ी हैं ये ओवर ब्रिज भी दिख रहा है।

इसमें एक हिरण की फोटो दिख रही हैं जो की बहुत ही अच्छी हिरण दिख रही है।

और एक बाबा जी भी खड़े हैं जिनके ऊपर टाइप का लगा है और पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यह एक पार्क दिख रहा है जिसमें बच्चे स्लाइडिंग कर रहे हैं और बहोत छोटे छोटे बच्चे बहोत खुश दिख रहे हैं।

और इसमें दो लोग भी खड़े हैं इसके अगल बगल बगीचा भी दिख रहा है इसके सामने आगे--

यहा एक पूजा मेला टाइप का दिख रहा है जिसमें बहोत से लोग दिख रहे हैं एक व्यक्ति अपनी फोटो खींच रहा है और दीदी माताये लोग--

जोकि बहोत ही बड़ा है और इसमें कुछ डिजाइने भी दिख रही हैं इसमें ये व्यक्ति स्कूटी चलाते हुए--

यह एक कपड़े की दुकान नजर आ रही है जिसमें पन्नियों में बहुत सारे कपड़े रखे हैं।